इमारत की तरह है एक पेड़ और ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो हरे पत्ते दिख रहे हैं पीछे पेड़ है और ये --

फूल का मार्केट है जहां पर बहुत सारे फूल मिल रहे है कई-कई तरीके के फूल मिल --